चप्पल खड़ाऊ रखे हैं खड़ाऊ--

उसके साइड में एक छोटी मूर्ति है।

ये किसी की समारोह स्थल के गेट की फोटो है जो बहोत अच्छे से डेकोरेट कर रखा है।

आसमानी है सामने एक लड़का खड़ा है जिसने सफेद शर्--